और डिया जला रहे है यह किसी घाट का फोटो है यहाँ कुछ महिलाए पूजा करने का प्रयास कर रही हैं।

एक बैलून भी लगा हुआ है यहां एक सी_सी_टी_वी कैमरा भी मौजूद है और ऊपर एक लाइट और पंखे का भी प्रबंध है बेंच पर बच्चे बैठ--

दिखाए गए तस्वीर में एक छत को तोड़ने की कोशिश दो मजदुरों द्वारा की जा रही है यह एक पुराना मकान प्रतीत होता है।

यह फोटो स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया(State Bank Of India) एस_बी_आई(S_B_I) के ए_टी_एम(A_T_M) का है।